जिस तारीके की पेंटिंग यहाँ पे की गई है जिस तरीके की लइटिंग्स वगैरा की गई है बहुत ही ज्यादा सूंदर और एक क्लासिक सा वाइब यहाँ पर दे रही है बहुत अच्छा सा फील यहाँ पर दे रही है।